वहां पर ऊपर ये बॉल जैसे भी लगे हुए है और नीचे एक फैन भी है।

एक तस्वीर है जिसमें यह किया मोटर्स वाला बोर्ड लगाकर है ऊपर।

यह एक पिक्चर है जिसमें एक दीवार है जिसका कलर क्रीम है।

ये एक तस्वीर है जो एक दुकान की है जिसमें बहोत सारा सामान बेचा जा रहा है।

जहां पर ये दीवारो पे ये फ्लावर्स के वॉलपेपर लगाए गए है और हर एक दीवार पे ऊपर छत मे लिखा गया है हिंदी से --

इक तस्वीर है जो एक बाजार की है जहां पर बहोत सारे लोग हैं।